और उपर से लकड़ी के जैसा वो लगे है।

जो दिख रहे हैं और एक लैपटॉप दिख रहे हैं एक अ हाथ दिख रहे हैं जो लैपटॉप के ऊपर हैं।

यहां पे एक घर है घर के पीछे दिख रहा है की पानी जैसे झरने जैसे निकल रहे हैं।

जिसके ऊपर पोस्टर लगे हुए है और देवाल पे भी लिखे हुए है बहोत सारे दवाई दिख रहे हैं सीढ़ी दिख रहे है।

यहां बहुत सारे बैलून से दिल जैसन बनाए हुए है एक लड़का फोटो खिंचवा रहे हैं।

और थोड़ा तकिया जैसन कुछ है जो दिख रहे है।

यह यहां पे बहुत सारे लोग योगा करते हुए नजर आ रहे हैं।

और बहुत सारे घर दिख रहे हैं।

और एक बैग भी दिख रहे हैं एक पानी का बोतल भी दिख रहे हैं।

और लोहा से बने हुए है जिसमें बॉल लगे हुए हैं।

और भी दिख रही हरा कलर --

बहुत सारे कपड़े जिसमें दिख लग रहे हैं और बहुत सारे लोग आए हुए हैं।

यहां पे तीन आदमी है एक दूसरे के हाथ पे हाथ रखे हुए हैं और--

यहाँ पे पहाड़ पे से गिरती हुई बहुत सारे झरना जइसन आ रहे पानी और बहोत सारे घर दिख रहे पहाड़ सब दिख रहे है और बड़े-बड़े पत्थर भी दिख रहे --